यहां मुझे स्कूल दिखाई पड़ रही है।

पूल के नीचे एक नदी है।

इसमें मुझे रेल पटरी दिखाई पड़ रही है।

इस फोटो में एक बड़ा जंगल दिखाया गया है।

इस फोटो में मछलियां दिखाई दे रही हैं।

यहां दो बाल्टी रखी गई है।

होटल के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

मैदान में एक टेबल और तीन कुर्सी लगाई गई है।

सामने एक कुर्सी लगाई गई है।

फ्लोर पर सफेद रंग की टाइल्स लगाई गई है।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर है।

इस तस्वीर पर रेल पटरी दिखाई पड़ रही है।

नदी पार होने के लिए एक छोटा सा पुल है।

बहोत बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारे साइकिल और बाइक रखे गए हैं।

इस तस्वीर में स्कूल के एक क्लासरूम को दिखाया गया है।

आमने एक बड़ा सा गेट है।

इस जगह पर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस जगह पर बहुत सारे बैडमिंटन रखी हुई है।

इस जगह पर एक काला रंग की टूल रखी हुई है।

इस फोटो में बहुत बड़ा पहाड़ है।